ये एक बहुत पुराना मंदिर है ये काफी सुंदर दिख रहा है ऐसा लगता है कि ये काफी पुराना है इसका कलर देख कर बाहर इसमे लाइटे लगा दी गई हैं।

इस तस्वीर मे एक मॉल को दिखाया गया है जिसमें कोई नही बैठा है। इसमें पतझड मौसम के पेड़ है तथा फुल ज़मीन पर पड़े हुए है।

यहां पर एक किराना स्टोर दिखाया गया है जोकि एक बिल्डिंग के नीचे स्थित है। यहां पर कई सारे कट्टे रखे हुए है।